ये एक सफेद रंग की बिल्डिंग है इसके सामने पेड़ है सामने के साइड में घाँस नजर आ रही है ऊपर आसमान दिख रहा है उसके साइड में झंडा लगा हुआ है।

यह एक कमरा दिख रहा है इसमे दो महिला बैठी है दो पुरुष बैठे है।

यह एक कमरे की तस्वीर है इसके ऊपर बैनर लगा हुआ है।

यह तस्वीर में पीछे पार्क नजर आ रहा है उसमें फूल लगे हुआ दिख रहे है पेड़ में--

और कई व्यक्ति पीछे खड़े हुए है अ पीछे घने पेड़ है।

हैं एक महिला खड़ी हैँ पीछे आसमान नज़र आ रहा हैँ।